यहां पर मुझे एक वैन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक मैगी प्वाइंट ढाबा एंड रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे रामदास प्रसाद भंडार का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कुछ सजावट दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे दो औरत दिखाई दे रहीं है।